और सारे कपड़े भी धरे हैं बहुत सारे बॉल भी धरे हैं।

दो पखें दिख रहे हैं दो ब्लैक कलर की बोतल है चार व्हाइट कलर की बोतल दिख रही है बहुत सारी पाइप भी दिख रही हैं।

हमें इस तस्वीर में एक रेल की पटरी भी दिख रही है। एक जेब्रा का चित्र भी बना दिख रहा है।

और सारी रोड भी दिख रही है एक नीले कलर का तंबू भी दिख रहा--

छोटा सा बच्चा भी खड़ा हुआ है जो जेंट्स व्हाइट कलर के शर्ट पहने हैं ये।

हमे इस तस्वीर में ये दिख रहा है कि तीन गिटार रखे हुए हैं।

ये उसके बगल में एक बैग है ढोलक भी दिख रही है एक बैंजो दिख रहा है।

हमें इस तस्वीर में श्री कृष्ण जी की मूरत दिख रही है जो दोनो हाथों में बांसुरी लेहे हुए हैं।

दो पहिया दो गाड़ी दिख रही हैं दो साइकिल भी दिख रही हैं।

तीन इधर लाइट भी जल रही हैं। ईंटों का घर भी दिख रहा है। कोई व्हाइट कलर के डिब्बे भी रखे --

अह एक कुल्फी का ठेला लगा हुआ है चार पहिया गाड़ी भी खड़ी हुई हैं।

दो बाइकों की धुलाई कर कर रहे हैं एक एक स्कूटर बना रहे हैं।

पैर दिख रहे हैं रेड कलर की चेयर दिख रही है।

वो भी तना हुआ है जो चार लोग तंबू के नीचे बैठे हैं नाव में।

हमें इस तस्वीर में गार्डन जैसा दिख रहा है।

नीचे वाली रोड भी बनी दिख रही है जिसमें दो तोपें भी रखी हुई हैं।

पीछे पुरानी इमारत बनी जैसी दिख रही है।

हमें इस तस्वीर में नर्सरी जैसा दिख रहा--